सामने शिशॉ है और दीवार पर टाइल्स से लगी हुई है और से एक ट्रांसफॉर्म है बिजली का --

और पीछे ठेले हैं कुछ और पीछा कुछ पेड़ है।

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि इंसान कुछ खड़े हुए हैं और पेड़ भी लगा हुआ है और--

और पीछे कुछ पोस्टर भीं लगे दिखाई दे रहें हैं और बोर्ड भीं लगा नजर आयी दे रहा हैं मुझे मार्शल भीं दिख रहीं हैं।

और जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि पीछे गाड़ी भी है और बीच से रास्ता नजर दिखाई दे रही है।

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि पीछे कुछ गुब्बारे बने हुए हैं और कुछ सजा हुआ दिखाई दे रहा है दो गमले रखे हुए हैं।

मैं देख सकता हूँ कि मुझे काले कलर का गेट नजर--

लाल कलर की शटर दिखाई दे रही हैं।

और मुझे सफेद कलर का कुछ दिखाई दे रहा है मकान।

सामने वाला बेड दिखाई दे रहा है सामने गेट भी लगा दिखाई दे रहा है।

हुई है और मुझे दिख रहा है कि यह कुछ सजा हुआ है।

ये खीची हुई हैं और मुझे लोहे का पाया--